एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसमें स्काई ब्लू कलर दिखाई दे रहा है मटके दिखाई दे रहे हैं पेड़ दिखाई दे रहे हैं केबल्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे एक गेट दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का।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

एक केवल दिखाई दे रही है बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा पेड़ दिखाई दे रहे और यहां पर ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है।

और लाइट जलते हुए दिखाई दे रहे दिवार पर पर्पल कलर दिखाई दे रहा है।

बैनर लगा है जिसपर ब्लू कलर का है और यहाँ पर नीचे पिंक कलर दिखाई दे रहे ग्रीन कलर दिखाई दे रहा बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं रेड कलर दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग दिखाई दे रही है और भी बहुत कुछ दिखाई दे रहा है एक पक्षी दिखाई दे रहा है केविल दिखाई दे रही है रेड कलर दिखाई दे रहा है पिंक कलर दिखाई दे रहा है येलो कलर दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर बहुत सारे ठेले दिखाई दे रहे है ग्रीन ब्लू कलर के कुछ लोग दिखाई दे रहे --

बेंच चॉकलेट और ब्लैक कलर दिखाई दे रहा दीवार पर ग्रीन कलर दिखाइ दे रहा है येलो कलर दिखाई दे रहा है रेड कलर दिखाई दे रहा है और भी बहुत सारे कलर्स दिखाई दे रहे हैं बिग बैनर लगा हुआ दिखाई दे रहे है जिस पे पर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।